ये एक गेराज है गैरेज है और इसमें एक कूलर है एक चेयर है और एक मिशीन है जो गाड़ी ठीक करते है।

अंदर जाने के लिए वो कियें हैं अंदर कोई है शायद।

एक ब्लैक कलर का कार है एक वाइट कलर का कार है यह एक कार शोरूम है शायद।

इसमें यहां पर बहुत सारे छोटे बड़े लोगों का अं पैंट सार्ट --

और ये एक त्यौहार हो रहा है ये मंदिर का--

है न आधे लड़के तो ब्लू और व्हाइट कलर का पैंट पहने है और आधे लड़कियां रेड --

है इसमें लिखा हुआ है एमाजीन एमाजीन वॉल ।

ये गेट में लिखा है एमाजिंग वाल्ड ये बहोत अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है।

इस सरस्वती मां का पूजा हो रहा हैं सरस्वती मां को--

पूजा कर रही है यहां पर व्हाइट ऑरेंज और ग्रीन कलर के बैलून से चारों तरफ सजाया गया हैं।

बहुत सुंदर डेकोरेशन किया गया है सरस्वती मां का पूजा कर रहे हैं यहां पर।